आसमान दिखाई पा रहा और सन दिखाई पा रहे--

पहाड़ दिखाई पा रहे हैं बादल दिखाई पा रहे हैं व्हाइट कलर का और आसमान दिखाई पा रहे हैं।

रोड दिखाई पा रहा है टाटा स्काई प्लेट दिखाई पा रहा है और आसमान दिखाई पा रहा है।

ये एक स्टोर है जहां ढेर सारा फ्रिज लोग दिखाई पर अलग अलग किसीम का और--

बनाना का पेड़ दिखाइए और सामने वाला टेंपो में नो एंट्री लिखके दिखाएं पड़ रहा है।

और फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगा हुआ है।

और दीवार में फ्रेम में चिपक के दिखाई पा रहे है स्विच बॉक्स दिखाई पा रहे हैं चेयर दिखाई पा रहे हैं फ्लोर मेंट दिखाई पा रहे है कारपेट ब्लैक एंड व्हाइट बिछा के है।

हमको यहां स्टेडियम दिखाई पा रहे--

और दो घर दिखाई पड़ रहे--